रखी हुई दिख रही है यहाँ पर टेबले रखी हुई दिख रही है यहाँ पर ख़ुर्शी रखी हुई दिख रही है टेबलो पर बोटल पानी की बोटले भी दिख रही है यहाँ पर दुकान में सोदा भी दिख रहा है यहाँ पर।

घर भी दिखाई दे रहा है इस पर शिवम सेल्स कॉर्पोरेशन पेंट दिखाई यहाँ पर बहोत सारे रंग-बिरंगे पेंट्स दिखाई दे रहे है यहाँ पर कलर दिखाई दिए यहाँ पर गिट्टी मिल दिखाई दे यहाँ पर ईंटा दिखाई दे यहाँ पर सीमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक सुन्दर सुन्दर लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है।

चारो पानी भरा दिखाई दे रहा है पर पानी बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

गायक प्रकाश कॉपी बनी हुई जो प्राप्त करेगा तो कब दिख रहै हैंक्राफ्ट दिखाएं यहां पर कॉफी लाइट लगी हुई दिख रही है।